ऑफिस दिखाया जा रहा है जिसका नाम--

यहां पर काले रंग का रैक भी रखा गया--

इसमें एक ड्रेस पैरट ग्रीन और डार्क ब्लू --

जिस ए_टी_एम के ऊपर बोर्ड लगा है।

पर हमें वो काफी धुंधला नजर आ रहा है।

एक कमरा दिखाया जा रहा है।

नीचे आता हुआ नजर आ रहा--